इस कमरे में चार कुर्सी दिखाई दे रही हैं और एक बेंच दिखाई दे रही है इसमें--

एक हमें मैदान दिखाई दे रहा है जिस मैदान में हरी घास है।

और बड़े भड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है और--

और आज बहुत ही हरियाली है और पेड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

साइकिल दिखाई दे रही है और लोहे के कही पाइप दिखाई दे रहे है। एक लोहे का पटरा भी दिखाई दे रहा है।

अ इसमें काफी फूल दिखाई दे रहे हैं।

दृश्य में एक ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है।

काफी पुतले दिखाई दे रहे हैं और एक तुलसी का बना हुआ--

एक पहले दिखाई दे रहा है जिसमें सजावट अच्छी हुई है और--

और बोहोत आदमी भी दिखाई दे रहे हैं कुछ आदमी बैठे हुए है और कुछ खडे हैं।

बाउंड्री भी दिखाई दे रही है और--